हाफ शर्ट पहने हुए हरा कलर के बॉल भर रहा है और पानी वाइट कलर फुर फुरा दे रहा है यहां पे।

एक फैना पीछे की ओर लगा हुआ हैं आगे की ओर खिड़की में देख रहा है कि एक पोस्टर लगा हुआ आगे ओर गेट निकला--

यहां पे एक पुल है जिसके नीचे एक हाथी है उसपे एक आदमी खारा होया हाथी के ऊपर लाल सिंदूर जैसा लगा है बहुत सारा आदमी है बहुत सा एक आदमी ऐसे पानी झोंक रहा है।

निकला हुआ है ऊपर की ओर एक पुल है तथा राइट में एक लोहा जैसा कुछ बना हुआ है इस हाथी से कुछ आदमी लाठी से लेकर खड़ा इसके नीचे बहुत सारा--

हरियर टी शर्ट पहनके खड़ा हुआ है यहां पे एक--

अंदर सीढ़ी जैसा लग रहा है। उसे रेड कलर से कुछ लगा हुआ है। पता नहीं वो क्या है बाईक --

आप देख सकते है यहां पे कुछ हुए पार्क जैसा बना जिसमें पीला कलर से लिखा हुआ है महात्मा गांधी--

ब्लैक कलर का खड़ा हुआ है एक आदमी बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है साइड में--

हरियर कलर के थैला है जिसमें कुछ रखा है साइड में एक ठेला लगा हुआ है जिसमें पूरा खाली है।

बहोत बड़ा व्हाइट कलर के मस्जिद जैसा घर बना है जिसके नीचे एक पीपल के वृक्ष है जिसके नीचे दो आदमी खड़ा हुआ एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ उसके नीचे भी रेड कलर का परदा ओरदा जैसे गिरा हुआ साइड में भी --